बगल से एक घडी है जोकि जिसमें टाइम लगा हुआ है। नीचे फर्श बिछा हुआ है। एक नीचे चद्दर है जिस --

सामने एक शो एक दुकान है जिसमें कांच की दीवाल है जिसमें पीछे कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं।

गेट लगा हुआ है बड़ा-बड़ा। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। पटेल लिखा हुआ है। नीचे दुकान पे एक बगल से पटेल लिखा है। दुकान --

फ़ोन से बात कर रहा है। नीचे हल्की सी घास पे मिट्टी डली हुई है। ऊपर खुला --

सामने एक लड़का है। जिसके बालों को एक आदमी बना रहा है। हाथ दिख रहा है कैंची दिख रही है। उसके हाथ में पीछे एक आदमी है जिसकी शर्ट दिख रही है।

स्टेज है। जिस पर सोफे रखा है व्हाइट कलर का और एक दूल्हा है।

उसके बगल से स्टिल की रेलिंग लगी हुई दो पिलर खड़े हुए है ब्लैक कलर के बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक दुकान है। जिसमे जलेबियाँ बन रही है। कुछ जलेबियाँ निक इमरतियाँ बन रही है।